ब्लैक कलर का इसको पलंबर मारा जा रहा है । पलंबर इसलिए बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है । सीएटी कैट दिखाई दे रहा है । सीएटी कैट और सही किया जा रहा है बनाया जा रहा है बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है एक आदमी है यहाँ पे दिखाई दे रहे फर्श पर --

और आप चाहे पार्क है केवल खाली है अभी --

देख सकती है यहाँ पे शादी का --